यहां काफी मात्रा में लोगा खड़े हुए है।

हॉल के बाहर कुछ प्लेन रखे हुए हैं इसके नीचे कुछ व्यक्ति खड़े हुए हैं।

कुछ बर्तन रखे हुए हैं जिसमें दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे एक व्यक्ति दूर खडा हुआ है टेबल को पकड़कर।

ऊपर बादलो का अच्छा दृश्य हो रहा है।

यह पेज हुए है जिसके निचे कुछ व्यक्ति खड़े हुए है आस पास कुछ पेड़ पौधे है।

यह एक कार का शोरूम है जो मैरेड एरोप्लेन के नाम से है जिसमें दो कार रखी हुई है जिसका एक--

बहार कुछ लोग व्यक्ति टेहल रहे थे एक व्यक्ति कोट पहने हुए हाथ में कुछ लिए हुए जा रहा है।

कुछ बेबी डॉल है कुछ प्लास्टिक का सामान रखा हुआ है।

यह एक पार्क है पार्क के आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे हैं।

यह एक शॉप है जिसमे काफी मात्रा में रंग बिरंगी चप्पलें टंगी हुई है।

दिये जला रहे हैं आस पास बहोत सारे लाइटिंग हैं।

छोटी-छोटी घास पड़ी हुई है कोशिश कुछ अह मिट्टी का सामान डला हुआ है बिल्डिंग काफी मात्रा में खिड़कियां हैं।

बीचो बिच से एक लगे हुए है आसपास बहत सारे हुई है और ये आसपास बड़ी मात्रा की पैर पौधे है जो काफी बड़े बड़े है।

यह एक रेड कलर की बिल्डिंग हैं जिसके बाहर एक काफी बड़ा गेट लगा हुआ है जो गेट नम्बर तीन के नाम से है।

एक बहोत बड़ी बिल्डिंग है जिसमे काफी मत्रा में लाइटे लगी हुई है पास हीसे सडक है।

यह एक हॉल है जिसमें रिसेप्शन पास पास कुछ --

तेल का घेरा बना हुआ है जिसपे कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं जो एक दूसरे से कुछ बातचीत कर रहे कुछ बच्चे हैं।

उसके बाहर स्कूल की बसें रखी हुई हैं पास ही में गार्डन है जिसमें कुछ स्टूडेंट बेंच पर बैठे हुए हैं।

यह एक सब्जी मंडी है जिसमें कुछ दुकानें लगी हुई है। आस पास कुछ लोग है।

यह एक पेट्रोल पंप है जिसके आस पास कुछ बैलून लगे हुए है जिसकी शयद ओपनिंग हो रही है।

पैकेट्स रखा हुआ है उसके ऊपर गोल्ड प्लस के नाम से एक--

यह एक हॉल है जिसमें जिम है जिम में कुछ व्यक्ति--